यह बीच में एक आदमी अंदर से बाहर आ--

रिंग के नीचे चरणों के नीचे कुछ महिलाएं बैठी हैं और इनकी पूजा कर रही--

अ दुकान के आगे बहोत सारे स्टील की बाल्टी टांगे हुए है और अंदर बहोत सारे सामान रखे है और आगे कुछ ड्रॉमे भी रखे--

जिससे लोग आसानी से इस पार से उस पार जा सकते हैं और ट्रेन अभी अपने पटरी पे--